और बहुत सारी बम्बू है क्रॉस क्रॉस होकर।

पर्दा का कलर ब्राउन और सफेद है।

कारपेट का कलर हरा कलर का है।

इस पिक्चर पर एक काला कलर की बोर्ड नजर आ रहा है।

कोने कोने पर बड़े बड़े मैदान है।

छोटे छोटे लाइट भी है।